और बाहर बोहोत सारें लोग खड़े दिखाई दे रहें --

एक आदमी साइकिल पे बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इमारत बोहोत सारी लाइटे से सजी नजर आ रही है।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

यहाँ बहोत सारी कॉफी मशीन नज़र आ रही है। बहोत से डब्बे नज़र आ रहे हैं।